यहाँ से अ इस पिकचर में देखने से लग रहा है की यह कोई स्कूल या कॉलेज है।

इस पिक्चर को देखने पर सपष्ट हो रहा है की यह मंदिर है।

पिक्चर को देखने से स्पष्ट इ यह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे आगे में एक टोल सेंटर है जहाँ पे बहुत सारी गाड़ी रुकी है।

यह एक मैदान है जहाँ पर एक कॉलेज बना हुआ है जो उजले कलर की है और यहाँ पे बहुत बड़ा मैदान है और बॉस्केटबोल खलेने वाल भी स्टिंग लगा हुआ है और ऊपर से आसमान खुला हुआ है और बिजली वायर भी गया हुआ है।

यह एक अ समुद्र के साईड से हाईवे जाते हुए --

डैडी की दुकान है जहाँ पर एक लड़की स्कूटी लगा कै खड़ी हुई है बैठी हुई है।

इस पिक्चर के देखने से यह स्पष्ट हो रहा है की यह एक हॉल जहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है।

सामने में एक समुन्द्र है आसमान का रंग सफ़ेद है और --

इस पिक्चर को देखने से यह स्पष्ट हो रहा है की ये एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी वॉलीबॉल खेलने की प्रेक्टिस कर रहे हैं।

और पांच-छः नाव लगी हुई है यहाँ पर एक ग्रीन कलर किया है।

पिक्चर में एक व्यक्ति अपने मोटर पाईप से अपने बगीचे को पट अ-अ-अ --

और बहुत सारी झाड़ियाँ भी है।